यह इस प्रकार पीछे जैसे कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है।

यह एक स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुंदर है हरा भरा है।

यह एक शॉप की दुकान है इसमें शैंपू शॉप फेसवॉश क्लीनअप --

इसमें चार पांच चार जने दो जने बैठे हुए हैं और तीन जने खड़े हैं।

यह स्वतंत्रता दिवस की पिक्चर है इसमें एक स्टूडेंट खड़ा होके स्पीच दे रहा है उसके बैक साइड में--

बहुत सारे बच्चे बैठ के सुन रहे हैं इसे।

इससे पिंक कलर की इसमें दीवार है और साइड में छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं उसका एक गेट है आने जाने के।

ने लाइट का अच्छे से प्रबंध किया हुआ है दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।

हरी हरी घास के ऊपर पड़ा हुआ है उसके आसपास भी ग्रीन कलर की घास से डेकोरेट किया हुआ है।

पारक को बहुत ही सुंदर से डेकोरेट फूल बना के डेकोरेट किया हुआ है।

ये एक खुला मैदान सा है इसमें बहोत पेड़ पौधे लग रखे हैं और कुछ गाएं बैठकर--

यह एक जिम है इसमें एक लड़का दो लड़के साइकिलिंग कर रहे हैं और एक लड़का मशीन पे--

ये है जिम में रेड और येलो कलर और ग्रीन। कलर यूज़ --

यह एक फ्रूट्स की दुकान है शॉप है इस पे एक अंकल बैठे हुए हैं दुकान जो जिनकी दुकान है और एक गराह दो ग्राहक खड़े हैं एक ग्राहक दूर से देख रहा है ग्राहक पास खड़ा है।

ये हाईवे रोड है इस पे साइड में दो बाइक खड़े हुए हैं और एक मोटर से लिखी कोई शॉप है।

यहां पर एक अंकल बैठे हैं चेयर पर और बहुत सारे बच्चे हैं--

बच्चे बहुत खुश दिख रहे हैं और अंकल भी बहुत खुश दिख रहे हैं जो देने वाले--

यहां बहुत सारे जेंट्स हैं कुछ लेडिस भी है इसमें--

और ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है पेड़-पौधे लगे हुए हैं पीछे ग्रीन कलर के--

यह एक बिल्डिंग है जैसे की कोई स्कूल हो और उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हैं पिलर है और उसको लोहे के --

और आसपास वातावरण शांत लग रहा है पेड़ बहुत लगा रहे--

संख्या बहुत ज्यादा है इसमें शीशे में देखकर बच्चे डांस कर रहे हैं ।

बहुत बड़ा है जिम में बहुत सफाई लग रही है।

ये एक शॉप है जिसमें बहुत सारी चीजें पड़ी है झाड़ू पड़ी है।

और इसपे भाई इसमें एक शॉप का नाम भाई करियाना--

यहाँ एक बहुत बड़ी नदी है नदी के साइड में पुल है पुल के ऊपर एक आदमी खड़ा है जो पानी में देख रहा है पानी बहुत ही गहरा लग रहा है और पड़े पानी के आस पास --

पार्लर और शीशे लगे हैं ब्लैक कलर के और साइड में ही आशा ब्यूटी पार्लर का बोर्ड भी लगा हुआ है।

रखे है दो एक टू व्हीलर का और एक रेड कलर का और साइड में श्री श्याम बाबा का भी बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक जिम है जिम वो तो मशीने है लेकिन इसके अंदर कोई भी नहीं दिख रहा।

ले रहे हैं आसमान में सुंदर सा सूरज दिखाई दे रहा है और साइड में झाड़ियां हैं।

भाई कुछ पिछड़े खड़े हैं जो लेटे हैंउन्होंने वाइट और कुछ--

यहाँ बहुत ही बड़ी कोई बिल्डिंग लग रही है जिसके बाहर बहुत ही सारी कारें खड़ी हुई है जैसे कि यहाँ पर पार्किंग और कुछ वैने भी खड़ी हुई है।

यह एक सलून है जिसमें कटिंग होती है इसका नई-नई ओपनिंग हुई है शॉप की।

और उसके बाहर कुछ लिखा भी हुआ है और ए_सी ही ए_सी लगे हुए हैं।

यह एक पानी की मोटर हैइस फोटो में और इसमें--

बहोत सारी पाइपें आ रही है जगह जगह और बिजली के तार दिखाई दे रही हैं और साइड में मटका रखा हुआ है और नीचे--

बिलकुल भी साफ-सफाई नहीं की हुई है और ऊपर से भी अलग अलग कलर की तारे आ रही है।

ओ तीन जने ब चार जने बैठे हुए हैं और छू रहे हैं और यह सेल्स गोल्ड की कोई माता की मूर्ति है फिर भगवान की मूर्ति है।

और स्वीट्स आग जचाई हुई हैखाने का फूड वगैरह और।

एक मंदिर हैऔर इसमें भगवान जी की फोटो भी है वाहे गुरु की और साइड में ही--